इस चित्र मे एक म- मंदिर दिखाई दे रहा हैं जोकी सफेद कलर का हैं बहुत बड़ा ग्राउन्ड हैं।

और के लड़के की फोटो दिखाई गई रही हैं एक कूकर हैं गैस हैं।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा ग्राउन्ड है जो के हरी घास से ढका है| बहुत सारे लड़के हैं| एक बहुत बड़ा लाइट है।

इस चित्र में एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारी चटाई है।

जो की हरे कलर के है नीला आसमान है हरी घास है और अ नारियल के पेड़ है।

इसी चित्र में एक बगीचा दिख रहा है और बहुत सारी हरी घास है।

साइड मे एक भीत है मिट्टी हैऔर बड़ा-सा पर्वत है।